वही ऊपर की और हमें एक डॉल्फिन और एक स्कॉर्पियो बना हुआ दिखाई दे रहा है।

मैं हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है जहां हमें लोहे की छड़ से कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्टेशनरी शॉप का है।

देखने में यह एक स्टेडियम लग रहा है यहां लाइट भी बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वल रही है आसपास हमें पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप का है जो कि देखने में काफी बड़ा है वही हम यहां कुछ लोगों को--

हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है जो की देखने में काफी बड़ा है वहीं आसपास हम कुछ पेड़ भी देख पा रहे है जिनमें से कुछ पेड़ नारियल के पेड़ है।